मशीन के पास में एक लेडीस खड़ी हुई है।

यह एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

ऑटो के पीछे एक ट्रक खड़ा हुआ है ट्रक के पास में एक --

मैंदान के आस-पास पेड़ें भी दिखाई दे रहे है। पेड़ो के पीछे बड़े-बड़े घर देखाई दे रहे है।

यह एक कार दिखाई दे रही है जिसे पॉलिथीन से ढ़का है।